तस्वीर में मुझे दिखाई दे रही है बहुत सारी मछलियां एक टब रखा हे जिसमें पानी भरा हुआ हे यहां मछली तोलने काँटा भी है।

जैसे की पानी डालने का शावर एक कैंची एक कंगा यहां एक व्यक्ति उसकी सेल्फी लेते हुए नजर आ रहा है।

यह तसवीर किसी आश्रम की लाग रही है उसमे महिलाए सफेद रंग की साड़ी पहनी हुए है उन्होंने अपने मुंह पर मास्क भी लगा रखा है।

जमीन पर किसी भगवान की तसवीर को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है और उसे लाइटो से सजाया भी है।

पुरुष और महिलाएं अंदर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं यहाँ एक लकड़ी का खंबा है बाहर कुछ बुढ़िया के बाल बेचने वाले लोग भी हैं।

हमारे सामने एक गुलाबी रंग की बस है जिसमे लोग सवार है साइड में एक बड़ा विशालकाय वृक्ष भी नजर आ रहा है आसमान बिलकुल साफ़ है।

इस तसवीर मे मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा हैजिसकी काली घनी मुछे हैउसका रंग भी काला है।

यहां स्टेज पर एक पोडियम रखा है इस पर माइक भी लगा हुआ है और पीछे एक बहुत बड़ी विशालकाय तस्वीर लगी हुई है।

इस तस्वीर में बहुत सारे लड़के स्टेज पर खड़े हैं यह सब बच्चे सफेद रंग की पोशाक पहने हुए हैं।